इसपे एक घर दिखाई दे रहा है जिसका काम चलते हुए दिखाए दे रहा है। इसमें तीन मजदूर काम करते हुए दिखाए दे रहें हैं। इसमें घमेले --

इसमें एक मैदान दिखाई दे रहा जिसपे बहुत सारी कार खरी दिखाई दे रही कार का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा इसमें ब्लैक कलर की कांच लगी दिखाई दे रही इसमें एक --

इसमें एक अअ सैलून लाई की दुकान दिखाई दे रही इसमें एक शॉप भी दिखाई दे रही है इसमें --

इसमें एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें तीन सोफे रखे दिखाई दे रहें हैं सोफे पे रंग-बिरंगी गद्दी रखी दिखाई दे रही है गद्दी का कलर --

इसपे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर वाइट दिखाई दे रहा है। इसमें मीठा आईटीआई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें एक कार खड़ी दिखाई दे रही है। कार का कलर --

कलर के डब्बे दिखाई दे रहे हैं इसमें नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है जिसका कलर वाइट दिखाई दे रहा है इसमें कैरेट रखे दिखाई दे रहे हैं इसमें बहोत सारा --

बाउंड्री दिखाई दे रही है इसमें ब्लैक कलर का बादल दिखाई दे रहा है इसमें सफ़ेद सूरज भी दिखाई दे रहा है।

पल दिखाई दे रही है। इसमें बहुत सारी खिड़की दिखाई दे रही है। इसमें दरवाज़े दिखाई दे रहें हैं। इसमें लोहे की --